यहाँ पर बहुत सारे लोग लोहे के तार पर खड़े हुए हैं और कुछ लोगों के हाथ में औजार भी है और कुछ लोग माल डाल रहे हैं।

यहाँ पर एक कुर्सी दिखाई दे रही है और एक डमरू दिखाई दे रहा है।